यहां पे मुझे एक सामने में ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है सामने में बहुत सारी घासे दिखाई दे रही है बहुत सारे गमले नजर आ रहे हैं फूल नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

मुझे बैंक दिखाई दे रहा है जो दो तल्ला बैंक में बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही है कांच के।

यहां पर मुझे एक सामने में दुकान दिखाई दे रहा हैजिसमें स्वीट स्नैकर्स लिखा हुआ है सामने में बहुत सारे मिठाई के डब्बे नजर आ रहे हैं।

यहां प मुझे एक सामने में सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के चारों तरफ बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंग नजर आ रही है।

रखा हुआ है पैकेट्स रखे हुए हैं बिस्किट के नीचे कुरकुरे विंचे दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके छत्र में बहुत सुंदर से लाइट चल रही है।

यहां पे मुझे दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है।

जो लाइट जेल है सामने एक बहुत बड़ा खिड़की है जो प्रोसेसर है हब है पर्दा दिखाई दे रहा है।

नेचुरल व्यू दिखाई दे रही हैखिड़की दिखाई दे रहा है।

कर्नाटका लिखा हुआ है होटल के अंदर बहुत सारे लाइट चल रही है।

पानी का बोतल दिखाई दे रहा है पेपर दिखाई दे रहा बैग दिखाई दे रहा है और मोबाइल दिखाई दे रहा--

आसमान नजर आ रहा है दूर-दूर तक पानी नजर आ रहा है।

बहुत सारा मस्त दिखाई दे रहा है जो माथे में हेलमेट है।

मिट्टी दिखाई दे रहा है पत्थर दिखाई दे रहा है।

मेरे पीछे लाइटें दिखाई दे रही हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

दो बड़े बड़े गेट नजर आ रहा है जिसके पास कमरे रखे हुए हैं।

यहां पर मुझे सामने में एक बड़ा सा खाली जगह दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग फूल खरीद रहे हैं प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

और एक बेरबेर है येऊ दिखाई दे रहे हैदो बड़े पेंटिंग दिखाई दे रहे है।

छोटी लाइटें दिखाई दे रही है अंदर टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक कलर का फोन रखा हुआ है लाइटें नजर आ रही है।